और मेम जो है इन लोग पर नज़र रख रही है।

मगरमच्छ के शेप में बनी हुई है और --

इस तस्वीर में दिख रहा है सबसे पहले जो है वो बैलून दिखाई दे रहें हैं जो बलून ऊपर लगाए हुए हैं और कई व्यक्ति जो है इसमें --

इसके ऊपर हमें दो ये दिखाई दे रहे हैं ट्युबलाइट्स लगे हुए हैं और यहाँ पे जो हैं काफ़ी व्यक्ति खड़े हुए हैं खु --

ये चंडीगड़ की है और ये पीछे जो है ये आँडिगेट्स नज़र आ रहा है पीछे जो हैं हमे वो--

और इसमें एक बेफ़क पड़ा हुआ है इसमें जो ये --

ये इसकी जो है बूथ वाली साइड में जो है दो खंभे लगे हुए है जहाँ से हमे तार हो के नज़र जाते हुए नज़र आ रहे है।

इस पिक्चर में जो एमए तीन से चार पांच व्यक्ति माने जा रहै है।